एक आदमी अंदर है और कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं।

दुकान के अंदर लाल रंग का टी शर्ट पहने एक आदमी खड़ा हुआ है उसके पीछे सफेद कलर का बोर्ड है बहुत सारी लाइट्स जल रही हैं।

तीन शटर बने हुए हैं चार दीवाल बना हुआ है दीवाल का कलर लाल और पीला है पहले शटर में वाइट कर खड़ी है दूसरे शटर में--

सजा हुआ है ऊपर बहोत सारे ग्लासेस लगे हुए हैं ग्लासेस के ऊपर लाल रंग का आनंद लिखा हुआ है अंदर बहोत सारे लोग हैं।

उसके ऊपर बाइक खड़ा हुआ है जिसका रंग लाल और सफेद है बाइक में आर थ्री सुपर लिखा हुआ है।

सामने शटर का पीले रंग का दरवाजा दिखाई दे रहा है। पीले रंग के दरवाजे के बाद जो हरे रंग का दीवाल दिखाई दे रहा है।

पलंग के नीचे कुर्सी पड़ा है।

बिल्डिंग के बाहर बहोत सारे लाइट लगे हुवे हैं।

सामने तीन ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

पहला यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया लाल रंग से दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे टेबल बीछे हुए हैं टेबल के सामने बहोत सारी लाल कलर की कुर्सी लगी हुई है।

पिंक कलर के टेबल में कृष्ण भगवान और राधा मां की मूर्ति दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के बाजू एक खंभा है। खंभा के पास बहोत सारे काई है। काई का कलर ग्रीन है। कुछ पथर्स हैं।

जो ब्लू कलर का शर्ट ब्लू कलर का जींस पहना हुआ है।

सामने ब्लू कलर से सदर अस्पताल गोपालगंज लिखा हुआ है।

दो कार दिखाई दे रही है जिसका कलर व्हाइट और ब्लैक है।